यहाँ स्कूल है| स्कूल का ग्राउंड है ग्राउंड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

दूर घर दिख रहे हैं और एक कुछ ईटा रखी हुई है।

एक फेर मे टमाटर मिर्च प्याज और बहुत सी सब्जियां है।

पहाड़ के चारो तरफ पेड़ लगे हुए है।

उस में लाल पीले हरे नीले रंग है।

गाड़ी चला रहा है दो लोग गाड़ी के पास खड़े हैं एक टेम्पो मुड़ रहा है एक कार जा रही है।

नदी के आस-पास पेड़ लगे है।